उसमें दो तीन झूले दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक पाइप खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर टीन पड़ी हुई है।

छोटी छोटी दीवारें बना रखी हैं दीवारों के बीच में छोटे छोटे गेट और छोटे छोटे रोशनदान छोड़ रखे हैं।

दुकान के ऊपर साइड में लिखा हुआ है संटी की दुकान।

सामने एक आदमी दुकान में एंट्री कर रहा है।

एक ट्यूब है पीले और लाल रंग की।

बिल्डिंग के ऊपर एक सोलर प्लेट की लाइट लगी हुई है।